जैसे कि हम देख सकते है सामने हमको बहोत सुंदर दिख रहा है बहोत ही बढ़िया दिख रहा है आप देख सकते है सामने एक ठेला दिख रहा है जोकि हमको लाल और स्टील का ठेला दिख रहा है जोकि बहोत ही बढ़िया लग रहा हैं।